वह स्थान है जहां मुसलमान जाके नमाज पढ़ते है। मुसलमान का मुसलमान के भावनाओं का एक प्रतीक है ये।

और हमें एक बैंक के द्वारा बहोत सुविधा मिलती है। हम लोन ले सकते हैं गोल्ड लोन ले सकते हैं कार लोन ले सकते हैं होम्स लोन ले सकते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के लोन्स हम --

हिन्दू धर्म में मंदिर की मान्यता बहुत मानी जाती है और हिन्दू धर्म के लोग ज्यादा मंदिरों में ही जाते हैं। अलग-अलग देवी देवताओं का मंदिर होता है। हर देवी-देवताओं को मंदिरों में स्थापित किया जाता है। अलग-अलग देवी देवताओं का अलग-अलग श्रद्धा होती है। अलग जैसे कह सकते हैं हम अलग-अलग व्यक्ति हर अलग-अलग देवी देवताओं को मानता है।